महिला ने लाल रंग का लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

ये चित्र एक गिरिजा घर से जुड़ा चित्र दिखाई दे रहा है।

बच्चे झूला झूलते और खेलते दिखाई दे रहे है खूब सारी घास दिखाई दे रही है।

उसके हाँथ में मोबाइल दिखाई दे रहा है पत्ता गोभी रक्खी हुए दिखाई दे रहे है।

महिलाए दिखाई दे रही है बड़ा सा आईना दिखाई दे रहा है।

ये एक नर्तय कक्ष का चित्र है इसमें--

कुछ गाड़िया दिखाई दे रही है।

तीन महिलायें दिखाई दे रही हैं एक बच्चा दिखाई दे रहा है।